यह एक गांवों का दृश्य है जहाँ पर यह घर बने हुए है यहाँ पर कच्चा मकान और कच्चें रोड बने हुए है।

पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप के अंदर कुछ --

ये अपनी फोटो क्लीक करावा रहा है जिम के अंदर बैठ के--